ने का रास्ता है और अ साथ में एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है डिजाइन वाली।

और आसमान दिख रहा है। साथ में बहोत सारे पेड़ हैं और कुछ झोपड़ी दिख रही है हो सकता है होटल हो और उस उसके स स साथ लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे ।

ये पुल है पुल से ए ए सामने से गाड़ी आ रही है और पुल के दोनों किनारे का जो बाउंड्री है वो वाइट और आसमानी कलर से पेंट की गयी --

सामने मंदिर है। मंदिर को वाइट कलर से पेंट किया गया है और नीचे उसका बार्डर जो है पिंक है और एक साइड मे रेड कलर से है।

दोनों तरफ लोहे का बैरीगेट है और उसमें पेड़ है।